और यहां पर बड़े बड़े पेड़ भी हैं बहोत सारे।

इस फोटो में हमें एस_बी_आई बैंक दिख रहा है और बैंक के आगे बहोत सारे--

और इसमें सीटे भी लगी हुई हैं और इसके चक्के भी हमें दिख रहे हैं।

बहोत अच्छी तरीके से रखी गई है बहोत बड़ा हॉल है यहां पर--

यह फोटो कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम का फोटो है।

ग्राउंड में बहोत जादा घास भी है लेकिन यहां पे कोई भी गाय या बकरी नहीं चर रहा पता नहीं क्यों नहीं चर रहा --

कुछ चार्ट का फोटो दिखाया गया है यहां पर एक चर्च है।

और अभी सुबह का टाइम है और अगल बगल में बहुत ज्यादा हरियाली भी दिख रही है।

बाथरूम का स्टैंड दिख रहा है और बेसिन का स्टैंड भी दिख रहा है बहुत अलग अलग प्रकार के हैं।

बहोत ज्यादा यात्री यातायात करते है।

इस फोटो में हमें दुल्हन दूल्हा दूल्हा-दुल्हिन दिखाई पर रहे हैं।